यहाँ पर माता की मूर्ति रखी हुई है ये।

और यहाँ पर बोहोत सारी दुकानें लगी हुई हैं मछलियोँ की।

और यहाँ पर एक लड़का हैगा जो सब्जियाँ और फल बेच रहा है।

एक ब्लैक कलर का हैगा और दूसरा डार्क ब्लैक कलर का हैगा।

और यहाँ पर काफी लाइटें लगी हुई हेगीं और बहार खिड़कियां लगी हुईं जहा से रोशनी अंदर रही है।

और यहाँ एक दूसरे आदमी सामान ले रहे हैंगे। इनके हाथ में फूल हैंगे।

यहाँ पर चेयर रखी हुई हैंगी व्हाइट कलर की। वो सजी हुई हैंगी।

पीछे कुछ प्लाई ही रखी हैंगी और ये कची बनी हे यहाँ पर और साइड में कुछ बाड़क़ा पोस्टर हुआ हेगो।

यहाँ पर एक टॉल फिश बनी हुई हैगी जोकि ब्लैक और वाइट कलर की हैगी --

ये काफी ज्यादा पुराने हो गये हैंगे और ऊपर एक बड़ा झंडा लगा हुआ हैगा।